इस दृश्य में दिखाई गयी तस्वीर किसी मॉल की लग रही है इस मॉल में कुछ किराने के आइटम को अच्छे तरीके से सजा कर रखा गया है।

ई दृश्य में दिखाई गयी तस्वीर छोटे से बाजार लग रही है।